इस चित्र में बड़ा सारा ग्राउंड दिख रहा है जहाँ जोकि कच्चा सा है यहाँ पे मिट्टी भी पड़ी हुई है।

पीली और ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही हैं और यहां पे लोग नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं।

चित्र एक बड़ी सारी बिल्डिंग का दिखाई दे रहा है जोकि पीली अथवा कथई पुती हुई है ऊपर की ओर--

काँचकियाँ खिड़खियाँ दिख रही है छोटे बड़े पेड़ बाहर की ओर दिख रहे हैं।

जोकि एक सफेद वनीली है इस पे कुछ लिखा हुआ भी है।

सामने की ओर पील गुलाबी कलर की बाउंड्री है उसके पास एक दरवाजा है जो काले कलर का शटर है।

यह चित्र एक बड़े सारे पार्क का दिखाई दे रहा है जहाँ जमीन पर दो काली चेयर बैठने के लिए दिखाई दे रही है।

और यहाँ की छत पर बड़ा सारा झुमर बहुत सारे रंग बरंगे गोबानों से इसे सजाया गया --

और औरत बाइक पर खड़े हुई हैं एक आदमी नीचे जमीन पर खड़ा है एक व्यक्ति पास पैसे काटता हुआ दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर अलमारी में बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक ऑरेंज कलर की बकेट में सब्जियां रखी हैं।

चित्र में गुलाबी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां पेंट कराई हुई एक औरत--

और ये रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है ऊपर लटकता हुआ एक लैंप और लाइट दिखाई दे रही है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में एक शादी का गार्डन का दिखाई दे रहा है जहां पे अंदर की ओर रास्ता जाता हुआ दिख रहा है।

टिशू पेपर और माउस लगा है पीछे बैनर लगा है उस पे तितली साड़ी हाउस लिखा है।

ये चित्र एक मिठाई की दुकान का दिखाईं दे रहा है जहां बड़ा सारा काउंटर है। काउंटर के ऊपर --

चित्र में काउंटर पर एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास कंप्यूटर माउस --

ये चित्र एक बड़े सारे हॉल का दिख रहा है जोकि शेड से ढका हुआ है।

ये चित्र एक खेत का दिखाई दे रहा है जहां कच्ची सी जमीन पर सुखी सी घास और--

इस चित्र में बड़ी सारी सब लाल कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें बहुत से खिड़की दरवाजे हैं।

व यहाँ पर बहुत सारा पानी भडा हुआ है एक व्यक्ति पानी में जाता हुआ दिखाई दे --

एक ने वाइट शर्ट और ग्रे कलर की पेंट पहनी है आपस में बात करते हुए दिख --